और ब्लू और व्हाइट का कार्पेट बिछाया हुआ है यहाँ पर और गिट्टी भी दिखाई दी और हरे पेड़ भी यहाँ बहुत सारे हैं।

और तीन मर्द भी यहाँ खड़े हैं और एक लोहे का सीढ़ी दिखाई दे रहा है।

औ कुर्सी भी दिखाई दे रही है और बोहोत दो तीन तल्ला घर भी यहाँ प है। दो की तल्ला है।